बाहर यहां पर एक कार भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर रॉयल चॉइस लिखा है।

जहां पर कुछ लोग सामने नजर आ रहे हैं।

इस इमेज़ में सामने यहां पर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।